तथा चारो आ र बारूद मट्टिया नज़र दिखाई दे रही है तथा बनते हुए घर नज़र आ रहै है।

सड़क भी दिखाई दे दी है सामने ऊपर एक साइड देख सकते है बोर्ड भी लगा है पेट्रोल पम्प भी दिखाई दे रहा है बगल में पेड़ नज़र आ रहे है किनारे-किनारे के साइड --

पीले कलर के है हरे कलर के है संतरे कलर के है उन में हरे-हरे पौधे छोटे-छोटे भी रखे है।

खम्भे और छोटे खम्भे भी नज़र आ रहें हैं जिसके तार लटके हुएं हैं इतना सामने की और एक --

बीचो बिच खूब सारी लड़कियाँ जो की सफ़ेद और नीले कलर की साड़ी पहन रखी है आभूषण पहन रखे हैं।

कई सारे लोहे नज़र आ रहे है व्यक्ति दिखाई दे रहे है टैक्टर दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे दिवार है दीवार पे पोस्टर टाईले तथा--

इस भवन का कलर क्ले क्रीम कलर का है पीछे की साइड आप देख सकते है भ आसमान नज़र आ रहा है

बीच सड़क दिखाई दे रही है जो कि काफी चमक रही है सामने कि और एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर क्या --

छतरी जैसा भवन बन्न रखा है जो कि भूरे रंग का है।

किनारे कि तरफ भूमि हैं घासें नज़र आ रही है।

बिच में आप देख सकते है की लाइन बन रखे है।

हरा-भरा नज़र आ रहा है काले रंग का--

पेड़ है दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

पता उसके बगल एक झंडा भी नज़र आ रहा है सफ़ेद कलर के लोहे पे--

उनके आगे चटाइयों पे कई सारा सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में ए. टी. एम मशीन की ब्रांच दिखाई दे रही है।

दीवारों पे आप देख सकते है कि पोस्टर लगे हुए हैं लाल कलर के--

छतरी टाइप के खम्बे बन्न रखे है जो की रंग बिरंगे दिखाई दे रहे है तथा आप देख सकते है कि झूले नज़र आ रहे है।

झूले भी रंग-बरंगे है सामने एक दिवार भी दिखाई दे रही है पत्थरों की--

भवन सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा हैं नीचे घाँस हरी कलर के नज़र आ रही है।